पड़ता है पानी बाद --

इसके बाद उसमें ट्रेन भी चलते हैं उसके अंदर बड़े-बड़े खम्बे भी हैं उसके बाद उसके बाद --